यह चित्र बहोत सुंदर लग रहा है।

यहां बहोत सारी कुर्सियां है।

यह पहाड़ यह पत्थरों का चित्र है।

यहां पर बहोत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं।

यहां एक स्विमिंग पूल का चित्र है।

सब्जियों की दुकान का है।

ये चित्र एक स्कूल का लग रहा है।

यह चित्र एक स्टेज का है।

लोग यहाँ परेड देखने के लिए बैठे हैं।